चौकोर आकृतियां बनी हुई है और ऊपर की तरफ कुछ रैलिंग्स दिखाई दे रही है जिनका कलर भी ब्लू कलर का है।

एक गुलाबी कलर की इमारत है जो की एक मंदिर है।